चट्टानों के बगल में बहोत सारी झाड़ियां है।

झाड़ियों का कलर ग्रीन है बहोत सारे चट्टान है एक चट्टान बहोत बड़ा है।

कुर्सियों का कलर व्हाइट है एक कुर्सी में ग्रीन कलर का बोतल रखा हुआ है।

यह एक तालाब का दृश्य है जहां पर एक पेड़ है।

ये घर पिंक कलर का है जिसमें बहोत सारे खिड़की है खिड़की का कलर ब्लू है।

यह एक रोड का दृश्य है जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ है।

का कलर रेड है कुर्सी के बगल एक दीवाल है।

तीन कुर्सियां हैं कुर्सियों में वाइट कलर का तौलिया रखा हुआ है।

इसने येलो कलर का पैंट और वाइट कलर के गमछी पहनी हुई है।

यह नर्सरी के बाहर का दृश्य है।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

एक जीप है जिसका कलर ब्राउन है एक गाड़ी है जिसका कलर व्हाइट है।

यह मंदिर के बाहर का दृश्य है।

गेट में वाइट कलर से डिजाइन किया हुआ है ।

बिल्डिंग बहुत बड़ा है इसमें वाइट कलर का और येलो कलर का पेंट किया हुआ है।